इस पूरे जगह को छोटे छोटे पौधों से सजाया गया है।

यहां दीवार पर एक घड़ी टंगी दिख रही है।

तथा इसे ऑरेंज वाइट एंड ग्रीन कलर के बलून से सजाया गया है।

इसके अंदर बहुत सारी मोटी पतली तारें दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में सामने एक स्टेशनरी शॉप है।

यहां पर बहुत सारे पेड़ एवं पौधे हैं।

यहां की पूरी फर्श मार्बल की बनाई हुई है।

दूर में कुछ खजूर के पेड़ भी दिख रहे हैं।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

इन सभी रैक्स के अंदर बहोत सारे सामान रखे हुए हैं।

इस फोटो में एक बहोत बड़ी एंट्रेंस गेट दिख रही है जिसे क्रीम एंड रेड कलर से पेंट किया गया है।

इसके बीच वाली जगह में एक छोटा बच्चा खड़ा है।

जो की येल्लो शर्ट ब्लू जीन्स और रेड शूज पहना है।

इस मूर्ति को आर्टिफिशियल कंगन गले के हर तथा कान के बाली से सजाया गया है।

इस मूर्ति के बगल में एक और पत्थर की बनी मूर्ति दिख रही है।

तथा दूर में व्हाइट बिल्डिंगस नजर आ रही है।

जो कि सभी अलग अलग कलर्स के दिख रहे हैं।